यहां पर लोग काफी ज्यादा पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं ।

ये जलेबियां काफी स्वादिष्ट लग रही हैं।

इस थाली में काफी सारी जलेबियां गरमागरम रखी हुई हैं ।

यहाँ पर काफी सारी मछलियों की दुकानें लग रही हैं।

यहां की सारी दुकानें बंद दिख रही हैं ।

आसमान में मौसम साफ दिख रहा है ।

ये एक साड़ी की दुकान लग रही है।

ये एक रोड की फोटो है ।

यह रास्ता काफी ज्यादा साफ-सुथरा पड़ा हुआ है ।

इस गुफा की चट्टानों पर कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है ।

यहां पर दो लड़के भी दिखाई दे रहे हैं ।

यहां पर हर तरीके की चीजें रखी हुई हैं ।

यहां पर एक बच्चा साइकिल चलाता हुआ भी नजर आ रहा है ।

जहां पर चार-चार पलंग बिछे हुए हैं ।

बहुत ही ज्यादा हरे भरे माहौल का पेड़ पौधे लगे हुए हैं ।

ये रेस्टोरेंट काफी खूबसूरत लग रहा है।

इस रेस्टोरेंट का डेकोरेशन काफी खूबसूरती के साथ किया गया है ।

यहां की लाइटिंग भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है ।

ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी दिख रहा है ।

यहां पर एक आदमी छाते के साथ नजर आ रहा है ।

यहां पर एक लड़का जीन्स टी-शर्ट पहनकर अपनी बॉडी को दिखा रहा है ।

ये जिम काफी ज्यादा खूबसूरत से लग रही है ।

जो की काफी खूबसूरत दिख रही है।

इस होटल के बेसमेंट में एक पार्किंग भी बनी हुई है ।

सूखी सूखी घास से दिखाई दे रही है ।

सर पर टोपियां लगाए और कुछ लड़कियां सर पर दुपट्टा बांधकर पढ़ाई कर रही हैं।

ये दुकान काफी ज्यादा बड़ी भी दिख रही है ।